वैसे स्टेप करके परफार्म करते है यहां।

वे सारे बच्चों ने सेम कलर की --

ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं आस --

और यहाँ पर बर्फ पड़ी हुई है पूरी तरीके से।

एक रिक्शे की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें बहुत ही --

सारे रिक्शे यहाँ पे खड़े किए हुए हैं जिन्हें --

यहां पर लोग भी हमें दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग सो --

जब कभी भी लोग बीमार हो जाते हैं तो --

रखी हुई है और भी अलग अलग तरीके की दवाई है।

औऱ हनुमान जी के मूर्ति के चारों --

जिससे की वो चोट से बच जाएंगे।

जिसमें उन्हें ये सब देखना होता है कि यहां पर --

फेविकोल की मदद से और उससे जुड़ा कर --

है टोपियां रखी हुई हैं जो हम --

ये एक क्रिश्चियन स्कूल दिखाई दे रहा है।

शायद रात का टाइम हो गया होगा जिससे उन्होंने दुकानें यहां पे बंद कर दी हैं।

पकड़ के अपनी अपनी जगहों पर जाएंगे।

इस गंगोत्रीय राष्ट्रीय उद्यान के बगल में एक गंगोत्री --

कॉलेज की बिल्डिंग है इस कॉलेज में बी.एड कराया जाता है।

और बीच से पहाड़ों के बीच से ये नदी बह रही है।

ये एक पहाड़ी रास्ता दिखाई दे --

सामना करना पड़ता है कठिनाइयों का।

शर्ट पहनी है और ये एक सेल्फी ले रहा है अपने फोन से।

ये एक गाड़ियों का सर्विस सेंटर --

है जहाँ पर लोगों ने अपनी गाड़ी --

और रोड की साइड पे बैठने के लिए सीमेंट के ये बनाए हुए हैं सामने --

यहां पर अलग-अलग अ राज्यों को जाने वाली बसें यहां पर खड़ी हैं।